और बहुत सारी ऊपर में लाइटें लगी हुई है।

सादा पीला और साइड में बहुत सारे--

और सामने एक टेबल रखी हुए जो थोड़े से दिख रहे हैं।

और इसके चार चक्के हैं दो छोटे पेडील है लाल कलर में--

लाल शर्ट पहने हुए हैं काला जैकेट पहने हैं ।

जिसमें तीन लोग बैठे हुए और एक बच्चे बैठे हुए हैं।

एक आदमी साइकिल से जा रहे हैं और साइड में बहोत सारे खिलौने लगे हुए हैं।

ये एक बड़ा सा गेट है इस के अंदर बहुत सारी--

लकड़ी के पाटे रखे हुए हैं और इसके पास में--

दो बड़े-बड़े गाछ है उसके बगल में एक घर है।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इस में एम एस कंप्यूटर लिखा हुआ है।

जिसमें सामने नंदी जी बैठे हुए हैं।

दान पत्र का डब्बा रखा गया है।

और मंदिर में घंटी लगा हुआ है दो फूल से सजाया है ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

और सादा कलर के मार्बल लगे हुए हैं मंदिर में--

औरा ब्यूटी सलून लिखा हुआ है और इसमें फोन नंबर भी दिया गया है।

बहुत सारे गाछे लगी हुई है और ऊपर तार भी लगे हुए हैं।

दो पर्दे लगे हुए एक पर्दे खोले हुए हैं।

यहाँ पे तीन लड़की है जो योगा कर रहे हैं।

और इसकी बगल में जो दीवार है वो पीले कलर से की गई हैं उसमें एक छोटासा बोर्ड लगा हुआ है।

उसके बगल में कत्थे कलर में गेट है।

इसके बगल में ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

और ग्राउंड में बहुत सारे लड़के लड़की बैठे हुए हैं।

और बहुत सारे गाड़ी भी लगी हुई है बगल में--

मरून कलर की और सादा कलर की--

जिसमे सामने तीन पुतले लगे हुए हैं और इसमें लड़की की ड्रेस है।

और फोटो खींच रहा है उसके सामने बहुत सारे नारियल के घास हैं।

और उसके सामने भी बहोत सारे नारियल के गाछ लगे हुए हैं।

जिसकी गेट खोली हुई है और उस गेट के सामने--

और मैरून कलर का पेंट पहना हुआ है।

हरा कलर का जैकेट पहनी है साड़ी पहनी है।

ये एक नदी है जिसका पानी पूरा--

हरा-हरा हो चुका है और दोनों साइड पहाड़ है जिसमें पूरा हरा-हरा --

ये एक दुकान है कपड़ा का जिसके सामने एक बाइक और एक--

और ये दुकान के दोनों साइड फोटो लगा हुआ है एक साइड लड़का लड़की का और एक साइड लड़के का --

जिसमें बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं।

बेंच पे एक डब्बा रखा गया है उसके बगल में--

और ऊपर दीवार सादे कलर के किए हुए हैं एक पंखा लगा हुआ है।

एक दुकान है जिसमें बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

पर बहुत सारी चेयर लगे हुए हैं जहाँ पे आदमी औरत--

औरत बैठी हुई है जो खाना खा रहे हैं।

चल रहे हैं और चल काले--

घेरा हुआ है जिसमें झंडे लगे हुए हैं।

इस में एक आदमी नीचे लिख रहे हैं अभी उसे--

और एक औरत साड़ी पहन के खड़ी है अ कुछ बच्चे भी है।

और एक औरत सूट पहन के खड़ी है अंदर दुकान के--

और एक साइड में औरत खड़ी है मछली ले रही है।

सामान रखे है बोतल चार्जिंग रिमोट --

और एक बड़ी हिरन उसके साइड में भी दो-तीन हिरने खा रही है।

उसके बगल में बहुत बड़े बड़े गाछ है जिसके पत्ते हरे और लाल हो चुके बहुत सारे --

ये एक रेस्टोरेंट है जिसके सामने बहुत सारे छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं।

एक दुकान है जिसके ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है विंटर सेल फिफ्टी परसेंट ऑफर ।

ये दुकान है जिसमें बहुत सारे--

बफर लगे हुए है काले कलर के बैठने के लिए--

और दो चेयर लगा हुआ है और साइड में एक सोफा लगा हुआ है।

और सामने में दो कार लगी हुई है सादा कलर की।

और अंदर में बहुत आदमी और औरत है।

लाल कलर की चादर है दो लाल चियर है।

और पर्दे लगे हुए बैगनी कलर के ए_सी भी है।

जिस में फूल से सजाया गया है और--

और सामने में भी लाल और पीले पर्दे से--

शर्ट रखे हुएं हैं और दो शर्ट --

एंकर ने भी बहुत सारे शर्ट टंगे हुए हैं और बहुत सारे शर्ट --

और दीवार पर बहुत सारे खाने-पीने के तस्वीरें लगे हुए हैं।

दो बैठने की सीट लगी हुई है हरा कलर में और एक उसके बगल में--

लाल कलर का घर है उसके सामने बहुत सारे काँच लगे हुए हैं।

यहाँ पे दो कार खड़ी है एक सादा कलर की--

ग्रे कलर की और सामने बहुत सारे--

एक दुकान में बैनर लगे हुए है जिसमें लक्ष्मी एंटरप्राइज का--

बोर्ड लगा हुआ है और एक साइड में छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है।

और ऊपर लाइट जल रही है नीचे में भी एक लाइट जल रही है उसके बगल में --

उसके साइड में तीन गांच है उसके बगल में दो-तीन घर भी है।

ये एक दुकान है जिसके गेट काँच के हैं।

मशीनें रखी गई है एक कंप्यूटर भी है।

नारंगी गेंदा का ग्रास लगा हुआ है।

साइड में बहोत सारे बड़े बड़े घास भी हैं।

और सोफा लगा हुआ है टेबल लगे हुए है।

और उसके आगे एक लड़की जाते हुए दिख रही है और इसके पीछे भी बहोत सारे--

और एक सामने में पतली सी गाछ लगी हुई है जिसके पत्ता हरा और--

और नीचे बहुत सारे गाड़ी लगे हुए बाइक --

और इसके पीछे बहुत सारे फूल से सजाया गया है।

और बहुत सारे रंग बिरंगे गुलाबी सादा फूल से सजे गए हैं।

ये एक जींस का दुकान है जिसमें बहुत सारे जींस रखे हुए हैं।